एक ईमारत है जिस को लाल कलर के बॉर्डर से सजाया गया है |

एग्जीबिशन के लिए जो कांच के अंदर रखे गई है।

माला चढ़ी हुई है अलग-अलग केबिन बने हुए हैं लकड़ियों के।

ये डी.एस.पी. सोडा कॉफी शॉप लिखा हुआ है लाल कलर का टेबल है।

लकड़ी की अलमारियाँ दिखाई दे रही है जिसपे सीनरीयां --